यख मा जी कई सारा कछुवा छन यख मा जी यूं ते गढ़वाली मा जी कठोड़ु बोल्दां छन कठेड़ु बोलदान।

यख मा जी एक तराजू भी छ रख्युं इलेक्ट्रिक तराजू छा यख भितर एक फ्रिज छा फ्रिज भितर कई सारी कोल्ड ड्रिंक छन रखीं यख मा जी एक बैरवान भी छा यख मा जी कई सारा पंखान लग्यां लाइटन लगीं कई सारी।